और इस दीवाल में क्रिकेट प्लेयर्स का पिक्चर से अंपायर के पिक्चर से और बहुत सुन्दर ग्राउंड है पेड़ है।

जैसे मैं देख पा रही हूँ ये सुबह का समय है सामने बहुत बड़ा जगह है सामने बहुत सारा पहाड़ है पहाड़ के उपर पेड़ और पौधे है।

जैसे मैं देख पा रही हूँ सुबह का समय है सामने बहुत सुन्दर जिम का जगह है और ये रूम जिम का लग रहा है।

यहाँ का दीवाल बहोत सुन्दर से डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पे सुन्दर सा कप बनाया गया है दीवाल में वहाँ पे लिखा गया है बेस्ट लेक कॉफी --

जैसे की मैं देख पा रही हूँ ये का--

बहुत ही सुंदर लग रहा है ये रूम में दो चेयर है एक सोफा है टेबल है।

जैसे की देख पा रही हूँ ये सुबह का समय है सामने एक बड़ा सा हॉल है और यहाँ पे एक टेबल है और एक वयक्ति बैठे हुए है जैसे कोई मंत्री हो और ये --

जैसे मैं देख पा रही हूँ ये सुबह का समय है सामने के स्टेशन है स्टेशन का प्लेटफार्म है और यहाँ पे ट्रैन अ नहीं है अभी --

जैसा की मैं देख पा रही हूँ सुबह का समय है सामने एक बड़ा सा तालाब जैसा जगह है और ये जो पानी को तालाब को दो भाग में डिवाइड किया गया है और यहाँ पे जिस तरह से--

और प्लम्बर अपना काम कर रहे है बहोत ही सुन्दर तरीके से नया पाइप लग रहा है के लगाया जा रहा है।

ऐसे मैंने एक बार यु सुबह का समय है सामने एक बड़ा सा ब्रिज गया हुआ है और ब्रिज के ऊपर एक बाइक जा रहा है एक बाइक से लड़का--

जैसे की मैं देख पा रही हूँ सुबह का समय है सामने एक पास नदी है यहाँ पे बहुत सारी लेडीज जो है महिलायें --

आखरी में आ रहै है और यहाँ पे पूजा के लिए रेडी हो रहै है और वो जैसे लग रहा है की छठ पूजा का पूजा है।

और सुन्दर कलर का है ग्रीन कलर का वाइट कॉम्बिनेशन साथ अच्छा ल --

ऊँचा पहाड़ है यहाँ पे और बहुत सारा पेड़ है उसके बिच --

चल रहा है आस्था फाउंडेशन के द्वारा और यहाँ पे ये बच्चो को --

पिकनिक स्पॉट लग रहा है बहुत ही सुन्दर लग रहा है लोग एन्जॉय कर रहा है।